ये फोटो में एक रूम दिखाया गया है।

ये फोटो में बहोत सारा इंसान दिखाई दे रहा है।

कुछ इंसान जमीन में बैठकर खाना खा रहा है।

गाछी है ग्रीन ग्रीन ।

और उसका पीछे एक इंसान वीडियो ले रहा है।

ग्रीन ग्रासेस और गच्ची और बंबू से --

बच्चों का पीछे छोटा सा एक घर भी बना हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में एक पिक अप --

और वो लोग घर का ऊपर में सीमेंट का काम कर राहा है।

आस पास में बहोत सारा बैंबू गाछे है।

वॉल जो बैंबू से बनाया गया है।

और गेट का पीछे एक घर है।

ये फोटो में एक मंदिर और एक बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

और पीछे दुकानें का सब्जी दुकान बहुत ज्यादा है।

और एक बड़ा सा गेट है जिसमें लिखा है वेलकम ।

और आस पास में बहोत सारा ग्रीन ट्रीस एंड ग्रासेस बरती हुआ है।

और दुकान का अंदर एक आदमी जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक लॉन्ग पैंट पहेना--

ये फोटो में एक ए_टी_एम बोट है जिसमें लिखा हुआ है एक्सिस बैंक ।

और बैग में बहुत सारा--